यहां पर स्क्वायर लिखे हैं।

और साइड में सीढ़ी है अंदर जाने के लिए।

बैठे और दोस्त बहुत हैं।

उसमें आदमी एक बैठा है।

और महिंद्रा कार है और दो--

आजू बाजू बड़े झाड़ हैं।

ब्लू कलर का ग्लास --

इस तस्वीर में जिम का--

रूम दिखाई दे रहा है।

उसमें एक्सरसाइज मशीन एक्सरसाइज साइकल --

ये एक बिल्डिंग नजर आ रहा है।

और तकिया हैं और उपर गेट्स रखे हुए हैं।

इधर पे बहोत सारे पेड़ और पौधे हैं।

ए_सी और फैन भी है।

एक आदमी जिम करता हुआ नजर आ रहा है।

तस्वीर में मच्छी की दुकान दिखाई दे रही है।

उसका मैट का कलर हरिया है।

एक ग्लास का डोर है।

मस्जिद का रंग लाल है।

बैठे हुए हैं इबादत कर रहे हैं।

दो खड़े हैं चार बैठे हैं।

साइड में दो गाड़ियां हैं।

पोस्ट ऑफिस का कलर है।

बिल्डिंग का कलर क्रीम है।

येलो कलर ऑरेंज कलर ग्रीन कलर और हाथ में बैलून से अब बहुत सारे पब्लिक खड़े हुए हैं।

हैं हरे कलर का रंग है।

कुछ हाईवे दिख रहा है।

बहुत सारे लाइट्स लग रहे हैं अंद --

डॉक्टर बैठा हुआ है छः।

आदमी लोग खड़े हुए हैं।

ये एक कंस्ट्रक्शन साइट नजर आ रहा है।

छे आदमी काम कर रहे हैं।

इधर पे बहुत सारे सीमेंट हैं।

और रात का वक्त है।

इसमें तीन आदमी खड़े हैं।

ये एक टू वीलर में खड़ा है ब्लू कलर टीशर्ट पहन के।

और साइड में कार है।

हरे झाड़ के पास एक बड़ा बोर्ड है।

कुछ चेयर रखा हुआ है।

दो आदमी खड़े हुए हैं।

दो गाड़ी में जा र--

और साइड में रंग बिरंगे के कलर्स हैं।

उसमें चार जने खड़े हुए हैं।

और कवि और ऑरेंज दिख रहा है।

उसके कप का कलर काला है और ट्रै का कलर काला है और स्पून का कलर काले हैं।

इसमें एक आदमी खड़ा हुआ है पिंक शर्ट पहन के--

कंप्यूटर है लाइट्स लग रहे हैं।

कुछ खरीद रहे हैं साइड में ऑटो है।

इसमें सजावट की गई है।

साइड में पीछे बिल्डिंग --